इ बिहार ओटो सर्विस छै यहाँ पे एक द दूकान छै ओटो सर्विस के मतलब --

सो सोफा पे पर्दा लगल छै यहाँ पे बोल उल लागल छै। यहाँ पे बहुत आदमी छै। मतलब उ में हर आदमी के यहाँ पे नीचे में जे छै अथी पंडाल बिछायल छै बड़ा निक --

आहाँ के जे चाहे छी ले लय यहां पे कोंटर छै यहां पे डायरी उरी रखल छै यहां पर एक फोन छै यहां पर मतलब आहाँ सब जे युज करे ले चाही छी से ले सकलिहेन बड़ा निक लगे छै देखे --

बड़ा निक पंडाल के कते सुन्दर सजायल नीचा मे मतलब बिछायल --

सब देख रहल छै की एक ढलैया हो रहल छै यहाँ पे मतलब विम-उम लगा रहल छै मतलब जैसे होगल रोड बांधे छै मतलब बहुत आदमी छै यहाँ पे कैप भी पीहिन्ने छै सर ।

यहाँ पे तरह-तरह के आदमी ऐल हर जगह से आदमी ऐल छै। मतलब बड़ा नीक-नीक कपड़ा पिन्ह के ऐल छै। यहाँ पर पंडाल जे बहुत अच्छा से सजाल गैल छै।